यहाँ पर हाँ काफी सारे डंबल्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पर हमें दीवाल पर शीशे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

देखिये आप यहाँ पर देख सकते है ये एक रेलवे स्टेशन है हमे यहाँ पर तीन कुत्ते दिखाई दे रहे हैं इनके बिचमे एक आदमी भि खड़ा हुआ है और सामने की तरफ दूसरी साइड काफी सारे लोग दीखाई दे रहे हैं।

कोई कपड़ा बिछाकर बेच रहा है तो कोई टोकरी में मछली बेच रहा हैं। यहां पर बोहोत छोटी-छोटी मछलियाॅं हैं। यहां पर काफी सारे लोग भी खड़े हुए हैं। पीछे की तरफ काफी सारे साइकिलें भी दिखाई दे रही हैं।